शाम के समय में रोड पर बाइक वाला जाता दिखाई दे रहा है तथा एक ऑटो आ रहा है।

घूम टहल रहे हैं तथा खरीदारी कर रहे हैं।

इस बगीचे में एक व्यक्ति हाथ में फूल पकड़े हुए दिखाई दे रहा है।

यहाँ कुछ परिवार --